यहाँ पर बहुत सारे पेड़ और लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे सामने दो मंदिर दिख रहे हैं एक छोटा दिख रहा है सामने सीढ़िया नजर आ रही हैं।